यह एक ठेले में लाया गया है जिसका वजन बोहोत भारी दिखाई दे रहा हैं।

इस पिक्चर मे देखा जा सकता है की एक चर्च मे कुछ लोग मोजूद है और एक फादर भी मोजूद है जिसमे वे सही गलत का ज्ञान देते हुए और--